चारों ओर घर बनाए गए हैं यहां बस एक लोहे की दुकान है।

यहां पर एक स्कूल खुला हुआ है। साथ में आप बहोत सारी फुग्गे लगाए गए हैं।

यहाँ पर बहोत सारी लाइटे लगाई गई है बहार के तरफ कैमरा लगा हुआ है।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

चारों ओर दुकान है और यहां पर बहोत कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

यहाँ पर कुछ बच्चे दुकान से समान खरीद रहें हैं यहाँ पास एक होटल बनाया गया हैं।

इनका कलर अलग अलग रंग का है यहां पास एक सटर लगाई गई है।

यहां पर बहोत सारी ए_सी और पंखे भी रखे हुए है।